यहां पर एक दुकान है।

माथा में बहुत सारे क्लिप लगाया है।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

यहां बहुत सारा बलून रखा हुआ है जो कि ग्रीन और रेड और वाइट कलर की है।

एक स्टॉल भी लगा हुआ है।

यहां पर डेकोरेशन भी किया हुआ है और बल्ब भी जल रहे हैं ट्यूबलाइट भी लगाए हुए हैं।

इसका दीवाल में आइसक्रीम सॉफ्टी बना हुआ है।

यहां पे दो तीन गमले भी लगाए हुए हैं।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

यहां पे तीन पैर पौदाने बिछाए हुए हैं जो कि ग्रीन कलर की है ।

यहां बहोत सारे लाइटें जल रही है।

यहां पर टेंट भी लगा हुआ है।

और बहौत सारे घांस भी उगी हुई है।

यहां पर बहोत सारे आदमी भी है।

यह एक मार्केट का दृश्य है जहां पर स्टेट बैंक आफ इंडिया लिखा हुआ है।